मुझे इस चित्र में एक हरा भरा ग्राउंड दिख रहा है।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

बहु मंजिला बिल्डिंग है इस बिल्डिंग को ब्लू और व्हाइट से पेंट किया गया है।

यहां पे अलग-अलग तरीके के फ्रूट हैं।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

गार्डन में पिंक वाइट और येलो कलर के फूलो के पौधे हैं।

मंदिर के बाहर बहोत सारे लोग खड़े रह कर देख रहे है।

कमरे में दो प्रिंटर रखे हुए हैं।

देख पा रही हु कि ये एक बड़ा ग्राउंड है।

नक्शेदार गेट है जोकि ब्राउन और रेड कलर से पेंट किया गया है।

मेलाई मैं छोटी छोटी कार घूम रही हैं।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

मुझे इस चित्र में दिख रहा है कि ये एक कैफ़े है।

इन सब ने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं।

जहां पे वॉलपेपर लगाने का काम हो रहा है।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

जो कि कंप्यूटर का इंस्टिट्यूट है।

इस चित्र में दिख रहा है कि ये एक होटल का--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

जहाँ पे जिम की अलग अलग मशीन्स रखीं हुई हैं।